एक फ्रॉक टंगी हुई एंगल में और भी साथ में दो तीन कपड़े एंगल में टंगे हुए हैं।

इस चित्र में बहुत सारी लाइटिंग और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं अपने हाथों में मोबाइल --

मीडियम साइज के पौधों को अच्छे से लगाया गया है और एक सीधा--

जिसमें व्हाइट कलर की टाइल्स लगी है।

और पेड़ भी लगे हुए हैं और एक गाड़ी भी खड़ी है दो इंसान भी खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहोत बड़ा भवन दिखाई दे रा है।

और मेन रोड दिखाई दे रहा है।

यह एक गौशाला है जिसमें बहुत सारी बकरियां खड़ी हुई है।

और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बैठे भी हैं।

यहां एक चर्च है जिसमें बहुत सारे--

एक टेबल लगा कर उसके ऊपर कुछ ड्राइंग्स पेपर्स रखे गए हैं पीछे खिड़कियां हैं।

पेंट किए गए हैं व्हाइट कलर की बाहर बोर्ड टंगी हुई है कुछ बाइक्स खड़े हैं सायकल्स खड़ी है।

और पर्दे भी टंगे हुए हैं।

यह बहोत बड़ा हॉल है जिसमें स्टेज के ऊपर भगवा राम की मूर्ति--

साउंड बॉक्स हैं चेयर लगी हुई है कुछ लोग मंच के ऊपर बैठे हुए हैं।

जिसमें एक इंसान चेयर में बैठा हुआ है बड़ा सा--